वहां पे चेयर रखी हुई है जहां कोई बैठा भी नहीं है यहां पे गुड्डे रखे हुए हैं टेबल पर कई प्रकार के केक है चॉकलेट है।

यहां पे लाल कलर की कुर्सी लगी हुई है।

पीछे एक आदमी के ऊपर तौलिया है और वो लेटा है।

ये तो वाइट पेंट है नीचे ये येलो पेंट है।

यहां पर एक मड़िया भी पड़ी हुई है जहां पर एक आदमी बैठा है और दूर दूर तक के यहां पर पहाड़ बने हुए हैं।

यहां पर गाड़ियां भी खड़ी है जिनके ऊपर हेलमेट टंगे हैं और यहां पे एक आदमी बैग टांगे हुए हेलमेट लगाए सामने से आ रहा है।

यहां पर एक आदमी भी खड़ा है।

फिर येलो बोतल रखी हुई है उसके बगल में कॉपी पेन रखें हुए है बैग ये हाथ में लिए हैं।

यहाँ पे कई सारी औरतें बैठी हैं एक लड़की ख़डी है हाथ में फोन लिए।

ये बस रोड है और इसके बगल में मैदान है और इसके उधर साइड पेड़ लगे हुए हैं कई सारे पेड़ लगे हैं।

इधर भी पेड़ है बाजू में भी पेड़ है और सामने कई लोग जा रहे हैं इसके अंदर घूमने के लिए।

कई सारे पेड़ हैं इधर बीच में सड़क है रामने बना है घूमने के लिए।

नीचे भी बुक रखी है ऊपर भी बुक रखी है।

यहां पे कुछ लिखा है वैद्यनाथ राइस मिल पी_वी_टी की मिल है राइस का राइस की फैक्ट्री है।

जहां पर नीचे आदमी लोग भी बैठे हुए हैं और यहां पे माइक भी लगा हुआ है।

उसके पीछे मकान बने उसके उनके हाथ में त्रिशूल है उसमें ढोलक लगा हुआ है।

यह मेट्रो यहां मेट्रो है यह स्टेशन पे उतारेगी इसमें कॉइन पड़ता है यह बहुत मस्त लगता है बहुत बढ़िया भागती है।

ब्लैक कलर का गेट लगा है।

यहां पर कई सारे कलर जैसे पिंक गुलाबी हरा--

बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है आसपास में शीशे लगे हैं कैमरे लगे हुए हैं।

रेड धागा भी बंधे है और पूरा रेड सूट है इसमें चमकीला चमकीला बना हुआ है।

यहां एक टील पड़ा है उसके नीचे बहोत सारे लोग खड़े है बहोत आदमी खड़े हैं।

साड़ी पहने है एक आदमी फोन चला रहा है और कई बुजुर्ग है कई आदमी लोग है बहुत लोग है।

स्लाइड का कलर है ग्रीन है एलो है उसके बाद लाल है।

यहां पे पेड़ लगा है बहुत बड़ा सा और ये बहुत प्यारा लग रहा बहुत मस्त व्यू आ रहा है यहां पे धूप निकली हुई है।

साइड में परदे लगे हुए हैं लाल कलर --

इसके बगल में कुछ रखा हुआ है।

टेबल रखकर के यहा येलो कलर का केक है व्हाइट केक है चॉकलेट वाला केक है।

यह आई_आई_टी कॉलेज है यह लखनऊ का आई_आई_टी कॉलेज है।

टी_वी ऑन है यहां पे सस्ता माल मिलता है यहां पर चिप्स टंगे हुए हैं।

कई लोग खड़े हैं एक आदमी खड़ा है जिसके बगल में एक बच्चा है और एक लड़का दूध लेके जा रहा है।

फ्रीजर है यहां कोकोकोला की कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं चिप्स मिलते हैं डेरीमिल्क मिलती है सामान मिलता है।

ये पीने का और सामान मिलता है चॉकलेटी भी मिलती है और कई लोग बाहर खड़े--